इस चित्र में एक बेड दिखाई दे रहा है।

और पास में एक कैंपर भी रखा हुआ है।

इस चित्र में एक सीमेंट की दीवार दिखाई दे रही है।

इस चित्र में इस्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे।

और बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं मुर्गों के पानी पीने वाले।

और एक आदमी किताबें बेच रहा है।

और टेबल भी है यहां पे शीशे वाली चेयर भी हैं बेहतरीन वाली टाइलें पड़ी हुई हैं मस्त वाली।

एंड पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।